यह फोटो जिम के अंदर की है जहां ढेर सारे जिम करने वाले उपकरण रखे हुए हैं। इस जिम में ढेर सारे फैन और लाइटिंग्स लगाई गई हैं।

किया करते थे इन सारे प्रोडक्ट देखने मे सुंदर दिखाई दे रहे हैं |

उपकरणों कि है जो प्राचीन समय मे उपयोग किया जाता था।

इस फोटो में ढेर सारे गणेश भगवन की मूर्तिया दिखाई दे रही है।

येह फोटो मसजिश का है जिसके अंदर का गेट बंद है।

यह फोटो एक म्युसियम मे रखे हुए गांधीजी के चरखे और खड़ाऊ की फोटो है।

इसको टेबल पे रखा गया है और इस टेबल के पीछे कापी में लिखा गया है।

यह फोटो पी.एस. मल्टीप्लेक्स का है जहाँ अंदर मूवी देखी जाती है यहाँ ढेर सारी युवा बॉक्स ऑफिस टिकट ले रहे हैं।

यह फोटो म्यूजिउम मे रखे हुए गणेश भगवान की है जो पत्थर से बनाए गई है।

यह फोटू मकबरे की है मकबरे के अंदर ढेर सारे छोटी-छोटी दीवालों पे कला कृतियाँ दिखाई दे रही है जो --